साथ ही एक गोल - गोल जो है चबूतरी है जिसके ऊपर एक बड़ा सा पेड़ है।

साथ ही ऊपर से आसमान भी दिखाया जा रहा है साथ ही यहाँ पे है ना--

कहते है कि ये एक शॉपा है जिस पे एक बैग रखा हुआ है उसके सामने टेबल है।

यहाँ एक हमको बड़ा- सा ग्राउंड दिख रहा है हरा कलर का जिसमें काफी कुर्सियाँ लगी हुई है लोगों के लिए --

अ पेड़ है हरे- भरे पेड़ -पौधे है एक छोटा- सा घर भी वाइट कलर का है जो है कुछ दिख रहा है उनको --

इसमें है न काफी अलमारिया रखी हुई है बुक से भरी एक लाइबेरी टाइप में जो हैना दिख रहा है साथ ही इसमें काफी दिवार है जिसमे लिघ्टयिंग वगेरा लगी हुई है।

और इसमें है न बहुत सारी रंग बिरंगी किताब जो है वो रखी हुई है इसमें --

ये सामान रखा हुआ है बोरिया बोरिया दिख रही है जिसमे कुछ प्याज वगेरा ऐसा कुछ दिख रहा है।

त सामने से एक गेट भी दिखाया जा रहा है जिसमें लिखा है जमा मस्जिद --

फिर साइड में इसमें एक ऊपर इसमें एक पोस्टर लगा है जिसमें लिखा है रॉयल प्लेस --

ऐसे हाथों में भी जूता पहना हुआ है और एक हाथ नीचे और एक हाथ ऊपर किया हुआ है ऐसा लग रहा है कि दोनों पैर हैं ।

बहुत बड़ा टेबल है जिसपे एक बहुत सुन्दर सा केक लगा हुआ है और टेबल बहुत ज्यादा--

--लगा हुआ है साथ में एक लेडीज है जो हाथ में अपने बच्चे को लेके खड़ा हुआ है पीछे एक दिवार है जो भी काफी--

गुलाबी फूलो वुलो से हरे फूलो से सजा हुआ एक गोल--

कुछ एक जंगल टाइप में महल जो हमको दिख रहा है।

चल रहा है साथ ही पीछे पीला कलर का दिवार है जिस पे कुछ पोस्टर भी दो पोस्टर रखे हुए है।

कोई एक पोस्टर को एक सिंगर दिखाया गया है जिसमें सामने जश्नन लिखा हुआ हैं।

एक शॉप है ना उसको ऐसे दिखाया जा रहा है कि फल फ्रूट का न एक शॉप लगा हुआ है जिसमें केले वगैरह तरबूज वगैरह सेब --

यह बहुत पुराना तहसील है ऊपर है न तार वार भी खींचा हुआ है बिजली का--

यहाँ पे हमको दिख रहा है की कोई एक --

लड़का जो है वो ऐसे खड़ा हुआ है नीली जैकेट में सफ़ेद शर्ट में ब्लैक पैन्ट में --

जो फोटो वोटो खींचा रहा है कोई साइड में पीछे एक अंदर एंटर करते एक आदमी और दिख रहा हम--

इंडिया लिखा हुआ है तो ये एक बैंक के साइड मे एक--

और ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर का जो दिख रहा है रात का जो है वो माहोल है।

शायद अ कोई नेता जी वगैरह जो आये हुए है बीच में कोई बड़े -बड़े पुरुष भी है ।

साथ ही इसमें देख रहै है की सामने हरा - हरा कलर का ब्लैक उलेक कलर का बहुत घना पेड़ लगा हुआ है।

यहाँ पे हमको दिख रहा है की एक --

दोनों राधा जी के किसोवर रंग भी रंग सजे हुए है। वैसे तो मूर्ति पूरी सफेद है। इनके हाथ मै बांसुरी है।

पढाई कर रहै है अपना अपना कॉपी लेके खोल के बैठे हुए है आप साथ में दो एक लेडीस एक आद जेंट्स लोग भी दिख रहै है जो फ़ोन पे बात कर रहै है।

हरा - हरा धान लगा है जिसमें पानी भरा है साथ ही यहाँ पे दो बहोत बड़े - बड़े पेड़ है जस्ट सामने इनके दिख रहे है की बहोत बड़ा - बड़ा पहाड़ दिख रहा है कुछ --